सामने की तरफ मुझे एक दीवाल नजर आ रही है दीवाल के ऊपर में मुझे कुछ मूर्ति टाइप में बना हुआ नजर आरहा है इसके साथ कुछ गोल गोल से भी नजर आ रहे है सबकुछ पिल्लर टाइप में नजर आ रहे है नीचे की तरफ गोल गोल से नजर आरहे है ऊपर की तरफ शेप से बने नजर आ रहे दीवाल में।